यह फत्थरों से होते हुए आ रहा है तब पत्थर भी बड़े चमकीले लग रहे हैं।

बहोत बड़ा स्टार है स्नेटो सैंटा टोपी पहनी हुई है।

ऊपर तक कमरे बने हुए है बाउंड्री बनी हुई हैं घर दिखने में काफी अच्छा लग रहा है।

और सब ने कराटे ड्रेस पहन रखी है बेल्ट के सा--

यह एक कॉलेज है जहां--

पुन्ना लगाना पड़ता है आजू बाजू दो कमरे बने हुए है।

बिस्किट चिप्स मसाला सेव मिक्चर तेल अचार --